नीचे तीन आदमी खड़े हैं सीढ़ी की तरफ जाने का ऊपर का रास्ता है खुला हुआ है गेट --

टोटो रंग बिरंगे कलर की है ढेर सारे लोग भी कोई नीचे आ रहे हैं झोले टांग के कोई ट्रॉली के पास बैठे हुए हैं।

के पास बैग कापी किताब है।

और का भी छांव पानी में दिख रहा है।

नीचे भी काफी भीड़ है एक अंकल सामने से देख रहे हैं।

दीवाल का येल्लो और पिंक कलर में किया हुआ है गैस सीलिंडर लगा हुआ है जो आग लगने के बाद फायर जिसको हम बोल सकते हैं।

यह एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

टेबल लगा हुआ है एक स्कॉर्पियो लगा हुआ है रोड है।